इस फोटो में मुझे घर दिखाई--

एक ऑटो में मुझे तराजू दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे रूम दिखाई दे रहा है।